जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं और दो फ्लावर पॉट भी हैं। इसमे फ्लॉवर भी हैं और देखिये ए एक मेज पे रखी हुई है।

एक शूज नीचे हाथ किये हुए और ऊपर हाथ करके शूज को दिखा रहा है।

और यहाँ पे देखिये इस जिम में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर से लाइट भी यहाँ पे --